कचरा है यहाँ कचरा-उचरा फेखा जाता है इधर साइड देखिए इधर भी है।

यहाँ नर्तकी हो रहा है । यहाँ पे देखिये यहाँ पे --

चढ़ने के लिए वहाँ पर रुके --

यहाँ पे एक सलून में बहुत अच्छी-अच्छी बाल बनते है। यहाँ पे देखिये कितना अच्छा इसका बाल --

परसादी ये देखिये। पूरा कितना केला वगैरा ये सब हो गया। ये सब पूरा परसादी है इधर।

यह जाने का जगह है इधर जाने के बाद अलग से ऊपर भी --

इसलिए वॉटरफॉल है इसमें --

यहाँ पर बरगद का यह पेड़ है इसका लटकी हुए देख सकते हैं।

पढ़ रहा है यहाँ पे एक ओर पेड़-पौधे हीं हुए हैं।

देख सकते है ये वाला क्या कुछ तोड़ रहा है यहाँ का शायद का --

पत्थर में चढ़ते सीधे ऊपर भी चढ़ते है । यहाँ से लोग कितने भी गिर भी जाते है । देखिए कितना अच्छा-सा --

पर इसमें बहुत ज़्यादा काम लेता है इसमें लेकिन --

कितना अ सुंदर सा दृश्य है इधर |

यहाँ पे लोग पूजा कर रहे होते है। यहाँ और ये कितने बजे जगल है यहाँ पर देखिये एक या दस लोग लकड़ी को दे कर --